बैठी हैं और तीन महिलाएं खड़ी हुई हैं एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में काला--

पीले सफेद ऑरेंज फूलों के गुलदस्ते लगे हुए हैं।

हैबोतल रखी है जो तेल की है साइड में कुछ वाइपर रखे हुए हैं और--

इंग्लिश में अंबिका लिखा है और बीच में कुछ डमी --

सामने एक नर्सरी दिख रही है जिसमें बहुत सारे पौधे--

फूल दिख रहे हैं और साइड में कुछ गेंदे के पीले ऑरेंज फुल--

सामने एक टेबल दिख रही है जिस पर एकर--

गोल्डन कलर के पर्दे हैं ऊपर कुछ तस्वीरें दिख रही हैं साइड में एक पंखा--

दिख रही हैं और साइड में पिंक पीला सफेद पर टेंट दिख रहा है दूर बहुत सारे पेड़ और--

टीने है जिस पर ट्यूबलाइट और पंखे लगे हुए हैं।

शर्ट पहने हुए हैं पीछे कुछ घर दिख रहे हैं और एक--

और सफेद गुब्बारों का गुलस्ते बनी हुई है जिनके ऊपर--

लगी हुई है बाहर गार्डन बना हुआ है जिसमें हरे पेड़ --

सामने एक सिनेमा हॉल है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां--

हरी घास है और कुछ पेड़ दिखाई दे रही है ऊपर सफेद आसमान दिख रहा है।

सामने एक रिसेप्शन टेबल दिख रही है जिसमें नीचे ऑरेंज --

सामने एक घर दिख रहा है जो लाल कलर का है जिसमें ऊपर --

क्रीम कलर की है इसमें ऊपर बहुत सारी नीले कलर --

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो ऊपर ऑरेंज कलर की है नीचे ए--

सफेद पिंक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें अचीवर्स लाइब्रेरी लिखा हुआ है और कुछ लड़कों की फोटो --

दिख रही हैं और कुछ पेड़े दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीला सफेद आसमान--

दिख रहा है और सामने दूर बड़ी-बड़ी सफेद बिल्डिंग दिख--